गार्डन दिखाई दे रहा है और वो गार्डन में बैठने की व्यवस्था करी रखी है। बहोत सुंदर-सा गा --

कुछ पौधे बहोत सारे दिखाई दे रहे। छोटे-छोटे घास भी दिखाई दे रहा है। बोहोत सुंदर-सा पानी आ रहा है। आ आते हुए पानी बोहोत सुंदर दिखाई दे रहा है और कुछ पत्थर ओत्थर भी दिख रहे है।

यहाँ कुछ खाने की चीज रखी है जोकि बोहोत सुंदर लग रही है और उसके साथ टमाटर सॉस भी रखा दिखाई दे रहा है और और एक --

एक प्लेट में चटनी भी दिखाई दे रही है जिसमें स्पून भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक साइड में स्पून भी रखा दिखाई दे रहा है और बोहोत टेस --

है रेड गुलाब की। इन्ना सुंदर फ्लॉवर दिखाई दे रहा है। बोहोत सुंदर रेड गुलाब बोहोत सुंदर दिखाई दे रहा है। बोहोत प्रेटी लग रहा है वो गुलाब।

यहाँ ग्रीन कलर का घर दिखाई दे रहा है जो कि बहोत सुंदर घर दिख रहा है और घर में पौधे भी लगाए हुए दिखाई दे रहे है और जो गेट मेन गेट रहता है बोहोत अच्छा है।

लोहे का गेट दिखाई दे रहा है। उसमें पेंट एलो कलर का करा है। ब्लैक एंड व्हाइट और एलो और रेड कलर का पेंट किया हुआ दिखाई दे रहा है। बोहोत सुंदर गेट भी दिखाई दे रहा है बोहोत बड़ा गेट है।

यहाँ कुछ दुकान दिखाई दे रही है और यहाँ काफी कॉफी वगेरे भी बन रहे है। कॉफी दिख रही है और कुछ हैंडवाश वगेरे भी दिखाई दे रहे है। कुछ काफ --

व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है और वहाँ साइकिलें भी दिखाई दे रही है। बाइक खड़ी दिखाई दे रही है। मां सीता कर के कुछ दुकान भी दिखाई दे रही है। बोहोत सी चीजें यहां दिखाई दे रही है। रेड कलर की बाल्टी बिक रखी हुई दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है है न और उसके आस-पास कुछ पौधें भी दिखाई दे रहे हैं और वो शिवाजी जैसे दिख रहे हैं। वो बहोत अच्छे दिख रहे हैं।

आदमी भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। रोड पे ज्यादा लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं।

यहाँ एक चांदी की दुकान दिखाई दे रही है जोकि चांदी से कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है। बहोत सुंदर सा बना दिखाई इधर उधर साइड मे मंदिर वंदिर --

ये अभी कुछ ब बने हुए दिखाई दे रहे हैं और दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं और रेड कलर का कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है। बहोत सुंदर चांदी के बर्तन बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। बोहोत --

पौधों के साइड मे कुछ रोड भी दिखाई दे रही है। यहाँ बहोत सारे पौधे बहोत प्रकार-प्रकार के पौधे दिखाई दे रहे हैं।

पौधे भी लगाए हुए दिखाई दे रहे है और ना कार भी दिख रही है। बहोत सारी बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। स्कू --

यहाँ कुछ कार्यक्रम चालू होगा तो यहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है जैसे चेयर बहुत सारे चेयरो पे लोग बैठे हुए जैसे छोटे बच्च --

यहाँ कुछ गार्डन जैसे दिखाई दे रहा है जोकि गार्डन बहोत सुंदर है। बोहोत बड़े-बड़े पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। बहोत सुंदर और बहोत कुछ छोटे --

यहाँ एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जोकि व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। है न और उसी के साइड मे बहोत सारी बाइकें भी --